एक ब्लू कलर का कपड़ा रखा हुआ है जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी बच्चे का खिलौना है जैसे नाव है शतरंज का खेल है कुछ आकृति है।

--देखते है इस ये बच्चे में कोन फ़र्स्ट आता है कोन सेकंड आता है कोन थर्ड आता हैं ये अतरराष्ट्रीय खेल है मै इसे देखना चाहता हूं धन्यवाद।

मुझे इस फोटो में एक पूल दिख रहा हैं उस पूल के उपर एक आदमी हैं वो आदमी ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ हैं।

और उस मंदिर के गेट पर तरह-तरह का भगवान है जैसे राधा कृष्ण रावण शंकरजी हनुमानजी---

अउ उस पर दुकानदार भी बैठा हुआ है कुर्सी पर उसमे कुर्सी दिख रहा है दुकानदार अच्छा सा अच्छा लूँगी पहना हुआ है एक अच्छी शर्ट पहना हुआ है यही सब मुझे इस फोटो में दिख--

मुझे इस फोटो में एक आंध्रा बैंक दिख रहा है उसके नीचे एक ए.टी.एम. भी दिख रहा है गोल्ड लोन भी दिख रहा है।